यहाँ कोई कमरा दिखाई दे रहा है।

यह किसी मंदिर का गेट दिखाई दे--

सामान थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा हैं।

और एक ढोलक बजा रहा है फूलों से डेकोरेशन की गई है।

जिस पर स्लिप बेल शॉपी लिखा हुआ--

दिखाई दे रही है और एक--

और बहोत से बैरियर्स भी लगे हुए हैं लाइट्स दिखाइ दे रही है।

बूढ़ा मछली ख़रीद रहा है।

शायद यह शनि देव की मूरत दिखाई दे रही है।

कुछ गाड़ियां सफेद तथा काली दिखाई दे रही हैं।

जहां एक मिरर में एक लड़का फोटो खींचता दिखाई दे रहा है।

और ग्रीन कलर पोस्टर है।

दे रहा है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स --

यह किसी डॉक्टर का कैबिन दिखाई दे रहा है।

कीपैड दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक ग्राउंड दिखाई दे रहा--

पास जंगल दिखाई दे रहा है।

जहां पर बहुत सी पेटियां--

विंडो दिखाई दे रही--

और एक टेबल दिखाई दे रहा है।

चीजें रखी हुई है और बहुत सा सामान स्टोर किया गया है और यहाँ पर प्राइस भी दिया गया है।

जो कि खुला हुआ है बाहर एक बालकनी से दिखाई दे रही है चारों--